यहाँ एक दिवार नज़र आ रहे है दिवार का रंग लाल है बच्चो ने रंग-बिरंगे कपड़े पहने है सभी अपना कार्य कर रहे है।

यहाँ एक अनकम्प्लीट बाइक है इसमें दोनों तरफ टायर लगे हुए है टायर का रंग काला है।

सारी जनता नज़र आ रहे है सभी दरसन करते हुए नज़र आ रहे है।

यहाँ पुलिस स्टेशन है इसमें बाहर दो पुलिस वाले नज़र आ रहे है सामने बिलडिंग नज़र आ रही है बिलडिंग का रंग नीला --

तीनों के रंग बाइक का रंग काला है।

निचे सड़क नज़र आ रही है सड़क पर जनता जाते नज़र आ रही है ऊपर--

साइड में पहाड़ नजर आ रहे है पहाड़ो पे हरी घास उगी है घास का रंग हरा है निचे पानी नज़र आ रहा है पानी का रंग नीला है।

यहाँ एक रोड नज़र आ रहा है जिसने एक इंसान जाता हुआ नज़र आ रहा है वह गाड़ी पे जा रहा है उसकी गाड़ी का रंग पर्पल है।

यहाँ एक मोबाईल की शॉप है जिसने अंदर मोबाईल की एक्सेसरीज नज़र आ रही है।

अ इंसान ने काले कलर का कोट पहना हुआ है इसने टाई लगाई हुई है ऊपर अंम फूल नज़र आ रहे है।

--पे टोपी है सफ़ेद कलर की इसका चस्मा लगा हुआ है काले कलर का इसने काले कलर का शर्ट पहना हुआ है भूरे कलर का पेंट पहना हुआ है।